यहां पर रेड कलर का अह कपड़ा ओढ़ाया हुआ है यहां पर एक लोग पकड़ के उसको खड़े हुए हैं।

बिल्डिंग व्हाइट कलर से पेंट है और इसमें छत पे बहुत सारे पेड़ छोटे छोटे रखे हुए हैं।

इसके किनारे किनारे लोहे की रेलिंग लगी हुई है जो येलो और ग्रीन कलर से पेंट है।

यहां पर एक पार्क है जहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जिसके सामने बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कुछ लेडिस है और कुछ जेंट्स भी हैं।

यहां पर एक गार्डन है जिसके सामने बहोत सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं।

यह एक आइस क्रीम की दुकान है जहां पर बहोत ही बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक बहोत ही बड़े रूम के अंदर बहुत सारी सीडे पड़ी हुई हैं जहां पर कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

यहां पर एक एल_सी_डी भी सामने लगी हुई है और बहुत सारे पर्दे भी लगे हुए--

यहां पर एक बेकरी है जहां पर बहोत ही सुंदर सुंदर केक और पेस्ट्री भी रखी हुई है।

इसके किनारे पर बहोत ही सारे घर बने हुए हैं।

एक बिल्डिंग बनी हुई है जो शीशे के दरवाजे से बनी हुई है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जहां पर दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहे हैं।

पर बहुत ही बड़ा पहाड़ टाइप में बना हुआ है।

यहां पर एक रूम है जो बहोत ही सुंदर वह बड़ा है।

यहां पर सूखी घास भी उगी हुई है।

यहां पर एक पर्दो की दुकान है जहां पर हल कलर के पर्दे और हर डिजाइन के पर्दे लगे हुए हैं।

इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

यहां पर एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसके आस पास दो बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और यहां पर लिखा हुआ है अंशु धन और यहां पर लोहे की रेलिंग लगी हुई है फर्श पड़ी हुई--